कुछ लोग नजर आ रहे हैं।

तीन अलमारियां ब्लैक कलर की है।

सामने कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

साथ ही बहुत सारी अलमारियां बनी हैं।

इस इमेज में एक पुल दिख रहा है।

मकान के एक तरफ कच्ची जमीन है।

इस रोड पर एक तरफ एक क्रेन की मशीन है जो की एक बड़ी मशीन है।

सामने एक सफेद कार भी दिखाई दे रही है।

इसके अंदर समान है ट्रक बाहर से खुला है।

दो काले रंग के बक्से दिख रहे हैं।

और वह दीवार काली हो चुकी है।

जिसमें कुछ आदमी काम कर रहे हैं।

इसके पास ही एक और पार्ट है।